शोरूम को बहुत ही अच्छे तरह से सजाया गया हैं बिलकुल बेलून से और देख सकते हैं कई लोग यहाँ पे गाड़ी खरीदने के लिए आये हुए हैं।

ये देख सकते है ये एक पार्क है जो की देखने में बहुत ही बड़ा बनाया गया है और देख सकते है कई लोग यहाँ पर घूमने के लिए आये हुए है पार्क में बहुत दूर-दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आते है।

यह देख सकते हैं यहाँ पर घर बन रहा हैं बहुत ही बड़ा घर हैं और देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा से घर बनाया जा रहा हैं और देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं।

ये देख सकते हैं ये साइकिल दुकान हैं और कई लोग साइकिल लेने के लिए आये हुए है देख सकते हैं।